आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। छोटे-छोटे बच्चे कुछ बना रहे हैं। एक सफेद कलर पहनी ही औरत खड़ी होकर उन्हें देख रही है। तस्वीर बहुत ही अच्छी है।

आप इस तस्वीर मे देख रहे हैं यह तस्वीर एक मेला की तस्वीर है | जहां पर बहुत सारे लोग है बहुत सारी कुर्सियां भी हैं और तस्वीर देखने में बहुत ही--

जैसा कि इस तस्वीर में देख रहे हैं। प्योरइट वाला मशीन लगा हुआ है।

भगवान जी भी कुछ लोग भी है। लाइट भी लगा हुआ है। एक आम का पेड़ भी है। और बहुत सारी लाइट है। लाइट की रंग नीला सफेद लाल कलर के है।